जिओ के बोर्ड के नीचे एक शीशे का दरवाजा बना है और बाहर एक येलो कलर का बोर्ड लगा है और साइड में झाड़ियां भी है।

इस तस्वीर में मुझे एक बहुत बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है जिसके बीच में पत्थर का डिजाइन बना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक हॉल नजर आ रहा है जहां पे पिलर्स लगे हुए हैं और छत पर लाइटे --

इसके साथ ही मुझे वो झोले भी नजर आ रे है।

ए रोड के दूसरी साइड एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है जिसके पांच मंजिल है।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

चेयर्स और टेबल नजर आ रहे है जो लकड़ी के बने हुए है।

इस तस्वीर में मुझे एक पहाड़ी दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारी झाड़ियां लगी हुई हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक पहाड़ी नजर आ रही है जहां पे बहोत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं।